काफी सारे पेड़ है दिखाई दे रहे हैं।

टमाटर कच्चे हैं येलो कलर के कुछ ग्रीन कलर के कुछ पे दाग लगे हुए हैं।

कुछ एकदम रेड रेड है कुछ कम रेड है कुछ येलो और रेड है।

यहां पर एक मेट्रो का भी बना हुआ है जिस पे लिखा है कृष्णा नगर और एक सिंबल बना हुआ है।

और एक पेड़ है जिनपे सारी चीजें लटकी हुई हैं उसी के पास ही में--

एक वाइट कलर से बॉर्डर बना हुआ है उसके बगल में एक फ्लावर रखा हुआ है एक बर्तन में।

काफी सारे पेड़ हैं जो कांटेदार है कटीले हैं नीचे--

ये एक बस स्टॉप है यहां पर काफी सारी बसें खड़ी है।

छोटा सा पिल्लर लगा हुआ है एक बड़ा पिल्लर है जिसपे तार जा रहा है।

बड़े बड़े पेड़ है नीचे कच्ची मिट्टी है जहां पर बच्चे खेल रहे हैं।

सभी लोगों ने हाथ जोड़ के बैठे हुए है।

ग्रीन कलर की पेंटिंग लगी हुई है उसके पीछे एक बड़ा सा दीवाल है।

यहां व्हाइट मार्बल से काम किया गया है या वाइट लाइटें लगी हुई हैं गुंबज लगा हुआ है मंदिर के ऊपर।

और झालरे लगी हुई हैं बाहर चप्पले रखी हुई काफी सारी।

और एक फैन है जो थोड़ा सा गंदा है ब्लैक कलर का हो गया है कांच का काउंटर है।

और जुट्स लटक रही हैं और एक बच्चा है जिसने चड्डी बनियाइन पहनी--

कुछ खंभे से तार जा रहा है।

यहा पर एक गार्डन है जहां पर काफी सारे पेड़ हैं छोटे छोटे और बड़े बड़े।

सा दोनों साइड का छोटी छोटी ग्रास लगी हुई है बीच में काफी सारी घ ग्रास लगी हुई जिसमें अलग अलग कलर फूल है।

जैसे कि पिंक व्हाईट रेड और भी बहुत सारे कलर के हैं।

यह एक बस स्टॉप है यहां पर एक बस खड़ी है काफी सारी सीटें पड़ी हुई हैं।

ये एक जिम है यहां पर दो मशीन रखी हुई है।

बाहर साइड एक सामने वाल ट्रांसपेरेंट कांच की खिड़की लगी हुई है बड़ी सी।

पोस्टर लगा हुआ बैनर है जिस पे बहुत सारी चीजें लिखी हु बहुत सारी इमेज बनी हुई हैं।

मेज पे काफी सारे लोग हैं जो कुछ लिख रहे हैं कुछ फोन में कुछ कर रहे हैं और बॉटल्स रखी हुई है।

वेस्टर्न डेरी फार्म ऊपर एक बैनर लगा हुआ है।

दूसरी साइड काफी सारी चीजें लिखी हुई है जो एक कांच पे रखी हुई है और नीचे कंप्यूटर है टेबल पे काफी सारे डाक्यूमेंट्स है सामने एक--